जैसे सूट प्ला प्लाज़ो --

शायद ये कोई फैक्ट्री है जिसमे कुछ बनता होगा सामने में खम्बा दिख रहा है और ये टीन का --

पहाड़ भी दिख रहे है बाइक के ऊपर दो हेलमेट रखा हुआ है।